यहां पे दो खिड़कियां भी लगी हुई हैं सीलिंग पे कई सारे रंग बिरंगे लाइट भी लगे हुए हैं।

यह एक छत पूजा की तस्वीर है यहां पे कई सारे कुंडे भी बने हुए है यहां पे केतारी बांधा हुआ है।

यह एक किचन की तस्वीर है। किचन में एक बड़ी सी खिड़की भी है। खिड़की पे नीले रंग का सीसा लगा हुआ है।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

यह एक प्रोग्राम का नृत्य का दृश्य है यहां पर कुल छह लोग हैं जो डांस कर रहे हैं।

यहां पे लाल रंग का लाइट जल रहा है पीछे एक आदमी सिंहासन पे बैठा हुआ है।

ढाबे के अंदर कई सारे टेबल और चेयर भी लगे हुए हैं ढाबे के बाहर कई सारे बाइक भी लगे हुए हैं।

बेशिंग के बगल में नीले रंग का डस्टबीन रखा हुआ है यहां पे कई सारे पिलर्स भी हैं।

मंदिर के बाहर कई सारे पूजा के सामान मिल रहे हैं मंदिर के बाहर कई सारे गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय है विद्यालय का रंग गुलाबी है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दुकान है। यहां पे कई सारे फ्रिज लगे हुए हैं।

सामने एक भूरे रंग का टेबुल भी है एक आदमी सफेद रंग का शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

यह एक नदी किराने का दृश्य है यहां पे बहोत सारे लोग योगा कर रहे हैं।

गेट के ऊपर बहुत ज्यादा सिटी बॉन्ड लिखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग की तस्वीर है। बिल्डिंग का रंग क्रीम और लाल है। बिल्डिंग में कई सारे खिनकियां भी है।